यह एक किसी बिल्डिंग का फोटो दिख रहा है इसके अंदर कलर का गेट लगा दिखा रहा है गेट में एह बंद दिख रहा है पीछे कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है एक शॉप दिखाई दे रही है जिसकी लाइट जलती दिख रही है। ऊपर--

सामने कुछ पर्दे लगे हैंकि डंडा दिख रहा है काला काला सा डब्बा दिखाई दे रहा हैजो दीवार पर लगा हुआ दिख रहा है वाइट कलर का पंखा दिख रहा हैसामने कुछ--